पीछे बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक रोटी की दुकान दिख रही है।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

एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां भी दिख रही हैं।

जिसके बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।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

और पीछे बहुत सारे बैनर भी लगे हुए--

इस फोटो में एक आदमी कपड़े को प्रेस कर रहा है और एक टेबल है नीले कलर की --

पीछे एक दीवाल दिख रही है सफेद कलर की और पेड़ भी लगे हुए हैं।

पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

सामने दो खिड़कियां भी दिख रही हैं।

इस फोटो में एक क्लास रूम दिख रहा है।

इस फोटो में सामने एक छोटी सी मूर्ति दिख रही है।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

इस फोटो में सामने एक घर दिख रहा है। रेड व्हाइट कलर का।

कुछ लोग भी दिख रहे हैं और एक दीवाल दिख रही है।

पीछे पेड़ लगे हुए हैं और एक ब्रिज बना हुआ है।